ये साइड में बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जिसका कलर व्हाइट एंड काला नजर आ रहा है।

और बहोत बड़ा तलाब भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं।

और एक टेबल भी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे मैट्स दिखाई दे रहे हैं एक बॉटल भी नज़र आ रहा --

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं दो लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे--

सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसका कलर ब्लैक एंड ग्रीन एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है नेचुरल स्टेज द ओरिजिनल --

सामने एक सौ बारह पुलिस की वैन दिखाई दे रही है जिसका कलर ब्लू एंड ग्रे दिखाई दे रहा है ऊपर में लाइटें जल रही हैं रेड एंड ब्लू करके।

और बहुत सारे गाड़ियां दिखाई दे रही हैं कारें चलते हुए नजर आ रही--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

कुछ गाड़ियां खड़ी हुए नजर आ रही हैं दो लोग दिखाई दे रहे--

में येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें लिखा हुआ है माता सुंदरी पब्लिक स्कूल --

एक बाउंड्री गई हुई है जिसका कलर ब्लैक येलो व्हाइट दिख रहा है एक खंभा दिखाई दे रहा है।

साइड में एक बाउंड्री बनी हुई दिखाई दे रही है एक क्रॉस दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर का बहुत सारे पेड़े नजर आ रहे हैं।

एक सैलून नज़र आ रहा है जहाँ पे बच्चे का बाल काटते हुए दिखाई दे रहा है एक फोटो खींचते हुए नज़र आ रहा है एक बच्ची बैठी हुई दिखाई दे रही है।

कपड़े के शोरूम नजर आ रही है जहां पे चार डमी दिखाई दे रहे है डमी के उपर--

सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे बोर्ड का कलर लाल लाल और व्हाइट नजर आ रहा है जिसमें सुख सागर लिखा हुआ है प्योर वेजीटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट दिख रहा है।

एक औरत दिखाई दे रही है झाड़ू मारते हुए जो शर्ट पहनी हुई है नीला कलर का दिख रहा है।

में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके नीचे व्हाइट कलर में फस्ट बक्स भी दिख रहा है और कुछ लोग खड़े हुए नज़र आ रहे है साइड मे पेड़-पौधे का फुल नज़र आ रहा है।

सामने एक कांच का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है जिसके अंदर मे बहोत सारे जंगले से रखाए हुए हैं एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल के ऊपर में--

एक ऐना दिखाई दे रहा है साइड में वॉश बहुत--

यह एक जिम दिखाई दे रहा है और जिम के बहोत सारे समाने नजर आ रहे हैं।

व्हाइट एंड रेड कलर का लग रहा है व लाइट जलती हुई दिख रही है कुछ लोग कैमरा लेके पकड़े--

पीछे कांच के कबर्ड नजर आ रहे हैं जिसमें बोहोत सारे रखाए हुए हैं ऊपर दो लाइट नजर आ रही है जो है।